सड़क के बीचो-बीच एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं। खंभे लगे हुए हैं साइड साइड एक दो।

घास का मैदान दिख रहा है बगल में। सामने एक टूटा फूटा सा घर दिख रहा है।

ये बालू या गेहू एहू का किसी चीज़ का ढेर लगा हुआ है शायद।

और उसके ऊपर दो तीन लोग बैठे हुए हैं।

और बोहोत तेज़ धूप हो रखी हुई है।

उसका साइड पोर्शन दिख रहा हैं।

दिखाई दे रहा है के शेप में।

और दिन का समय है आसमान दिखाई दे रहा है खुला -खुला --

पीछे से एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहोत ऊंची सी।

और वो पानी में धंसी हुई है काफी हद तक।